--और टावर भी वहां देखने को मिलता है अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में वह टावर बनाया गया होगा।

देखिए पानी में एक नाव है वहाँ देखिए वह नाव देखिए व्हाइट और कितने ब्लैक हल्का-हल्का दिखाई देता है उसका छाव भी पानी में दिखाई देता है।

उम-- अच्छे अंदाज में देखता हूँ वहा से इधर उधर उधर बहुत सारे ही स्टूडेंट है यहाँ पे लड़का लड़की सब है।

इसके नीचे देखिए बहुत बेहतरीन सा घर बनाया गया है काट-काट कर के तो यहाँ पर देखिए --

अ रिक्शा पे जो है मनिहारा का दुकान है मनिहारा बेच रहा है| मनिहारा और वहाँ देखिए आदमी सब आ रहा है इसको खरीदने के लिए मनिहरा दुकान से वहाँ देखिए एक कार लगा है अ लाल में से |

दो लड़का और व्हाइट टी-शर्ट पेहन कर के बैठा है और उधर ताक रहा है| लेकिन बहुत ये खूबसूरत-सा गेट बनाया गया है।

देखिये ये शोरूम का लगता है लेकिन ये नहीं गेट के ऊपर ये गेट के उस साइड देखिए बहुत है अंदर में दे--